पत्थर का पेड़ है चारो तरफ पेड़ है हरे कलर पे आदमी सब बैठा हुआ है झंडा है। लाल है एक ऑरेंज है एक --

टेबल सारा लगा हुआ है यहां हरे कलर का खड़ा है।

और आगे दो कलर का आगे ते मशीन अ इसका समान सब --

ये सीढ़ी है जाने वाला रास्ता है ये ये ये ऊपर शीशा सब है। ये व्हाइट कलर का बोर्ड पे ये उपर जाने का रास्ता है। नीचे जाने --